और ये वायरिन्ग का काम कर रहा है क्यूंकि इसने वाइट कलर की कैप पहेन रखी है जोकि दर्शाती है की यह एक इलेक्ट्रिशन है और ये उसी काम को पूरा कर रहा है।

इस तस्वीर में जो चिड़िया है वह फिंच प्रजाति की चिड़िया है और यह माइग्रेट नहीं करती एवं यह झुण्ड में रहना पसंद करती है।